पांच खिड़कियों में कांच लगें हुए हैं। नीचे में चैनल गेट लगा हुआ है जिसका कलर --

ग्राउंड पड़ा है। उसमें कुछ लोग दिख रहें हैं। एक बाइक खड़ी है जिसका कलर ब्लैक है। ग्राउंड --